छोटासा फील्ड है फील्ड मे बहुत सारा पेड़ पौधा है पोल गढ़ा हुआ है हरा हरा घास है अं बाउंड्री दिया हुआ है।

फल का दुकान है बहुत सारा दुकान है जो की संतरा है अनार है केला है।

एक आदमी उधर खड़ा है फूल गिनने के लिए एक आदमी फूल बेच रहा है।